मुझे एक रास्ता भी देखने को मिल रहा है इस तस्वीर--

उसी के साथ मुझे दो दो हरे रंग का सिंटेक्स भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में यह दिख रहा है कि वह व्यक्ति गाड़ी को बना रहे हैं।

पूल के सामने में ही मुझे नाली बनाया हुआ देखने को मिल रहा है इस तस्वीर पर--

उसके बाद मुझे पर्दे भी देखने को मिल रहा है इस तस्वीर पर।

और एक आदमी का चेहरा को ब्लर किया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

रोड में बहुत सारा गढ्ढा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर कई सारे पोस्टर लगाए हुए देखने को मिल रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर पिंक कलर की मॉक भी दिखाई दे रहा है उसके बाद मुझे कई सारे बच्चे की छाया देखने को मिल रहा है इस तस्वीर--